और कॉर्नर में एक मशीन है।

और कुछ आदमी नीचे बैठे हैं कुछ खड़े हैं कुछ फोन देख रहे हैं कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं।

महानिदेशालय है जहां पर बर्फ पड़ी हुई है।

यह एक व्यायाम ओपन जिम है।

और ये जगह बहुत ही ज्यादा--

यहां पर बहुत सारी औरतें नदी में स्नान कर रही है।

यहां पर बहुत ही अच्छा--

और यहां पर एक घर भी है।

और बिजली की तारे लगी हुई है।

रोड है पेड़ पौधे है बाइक है लोग है तीन चार।

और आसपास प्राकृतिक जगह है पेड़ पौधे हैं जिससे मजा आएगा।